और झाड़े दिख रही हैं पीछे की तरफ।

ये चित्र मे एक बड़ा सा कमान का है जिसके ऊपर एक कमान बनी हुई है ब्लू कलर की।

और बहुत सारा वह बड़ा-सा खंभा लगा हुआ है।

एक दुकान मॉल का है। जिसमे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

और बड़ा सा ग्राउंड है। झंडे लगे हुए हैं। झाड़े हैं।